ये एक बैंक के सामने की तस्वीर है जिसका नाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है यह फोटो कटनी की है।

व्हाइट कलर की बेड शीट बिछी हुई है एंड ब्लैंकेट ब्लू कलर का है।

वर्कआउट करने के लिए कई सारी मशीन्स है।

एक बस का नाम राजा दिखाई दे रहा है जिसके सामने एक--

जानते हैं जो कि कटनी ब्रांच का है।

ये एक बर्तन के दुकानों की शॉप हैं जहाँ पस--

यहां बहोत सारे बर्तन है घर के इस्तेमाल के लिए कई सारी चीजें हैं।

ये एक कपड़े की शॉप है जहां पे बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं कई सारे प्यारे प्यारे छोटे--

पार्किंग की जगह की फोटो है। जहां पे सिर्फ एक ही कार पार्क है।

एक आदमी खड़ा होके ये सब चीजों का संचालन कर रहा है।